यहां एक दुकान है दुकान के अंदर फ्रूटी है बॉटल है पानी की स्प्राइट है और यहा पे पान सीकर--

यहां पे अ बोर्ड है बोर्ड सबेरा लिखा है डिफेंस अकेडमी के लिए सामने एक ब्राउन कलर का गेट है।

यह एक पार्क है पार्क के अंदर झूले हैं आसपास लोग टाइलें उठा के ले जा रहे हैं।

और वो बैठके सेल्फी ले रहे हैं उनके दुकान में एक पंखा भी लगा हुआ है।

और आस पास बहोत सारे इसमें काले कलर की पैंट हो रखा--

बोरी रखी हुई है एक और एक हेल्मेट रखा हुआ है।

घर में दो तीन सोफ़े है सामने बहोत बड़ी अलमीरा है।

और कमरे में बहोत सारे पौधे भी लगे हुए हैं मनी प्लांट है।

और लोग अ इधर भाग रहे हैं और चिड़िया हैं पंक्षी उड़ रहे हैं।

आसपास बहुत ही सुंदर नजारा है बहुत ही साफ सफाई है।

यहां पे एक हॉल है हॉल के अंदर एक बक्सा रखा हुआ है।

टाइल के ऊपर लाइट लगी है टाइल्स चमक रही हैं।

तीन खिलाड़ी हैं दोनों अवार्ड दे रहे हैं इंडियन पीछे पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर पर पीछे लिखा है इंडियन वॉरियर्स क्रिकेट अकैडमी --

पार्टी के लिए बहोत सारी चेयर लगाई गई है ब्लैक कलर की सोफे हैं नीले और व्हाइट बैलून है।

आसपास पेड़ पौधे हैं सामने सूरज की किरणें आ रही हैं और नीचे टाइल्स लगी हैं और लोग--

यहां पे एक दुकान है श्री राम बल बिल्डर्स लिखा हुआ है अल्ट्राटेक लिखा हुआ है।